छठ पूजा जैसे हुआ सब बैलून टंगा हुआ है उजला ब्लू और पानी भरा हुआ है। कितारी है। लेडीज एक हाथ जोड़ के पूजा कर रही है एक माथा पे पल्लू रखी हुई बच्चा है ढेर सारा औरत है।